दुकानदार का मालिक व्हाइट कलर का शर्ट पहन के खड़ा हुआ है।

सामने एक चर्च नजर आ रहा है जिसका कलर व्हाइट है।

पीछे से रेड व्हाइट ब्लू हैं इसमें बहुत सारे चक्के लगे हुए है।

सामने नीले रंग का बोर्ड दिखाई दे रहा है।

अंदर वाइट कलर का दीवाल है।

एक लैपटॉप दिखाई दे रहा है चार आदमी खड़े हुए हैं।

दो टेबल दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर हरे रंग का कपड़ा बिछा हुआ है।

ग्रे कलर की कार्ड दिखाई दे रही हैं। नीचे रेड कलर की दरी बिछी हुई हैं।

व्हाइट कलर का दिवाल है जिसमें ब्लू और व्हाइट --

सामने ग्रे कलर की बिल्डिंग दिखाई दे रही है ऊपर रेड कलर से श्री ऑल मोड्स विला लिखा हुआ है बिल्डिंग के--

ऊपर चार ए_सी लगी हुई है बैंक के बाहर बहुत सारे लोग गाड़ी में बैठे नजर आ रहे हैं।

सामने ब्लू रंग का बोर्ड दिखाई दे रहा है जिसमें फंड्स पैटल्स लिखा हुआ है।

गाय भैंस नजर आ रहे हैं।

यह कपड़े की शॉप है जिसके दीवाल का कलर व्हाइट है ऊपर एल_ई_डी लाइट्स लगे हुए हैं।

सामने एक व्हाइट और रेड कलर का घर दिखाई दे रहा है जिसका दरवाजा--